सामने लोग कुर्सी पे बैठे हुए है मूर्तियो के पास एक व्यक्ति खड़ा है।

ये एक जगह का चित्र है जहां बच्चे खेल रहे है फुटबॉल से आस-पास पेड़ है बच्चों ने सफेद रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है।

ये चित्र एक जगह का है जिसमें एक शटर दिख रहा है उसके अंदर एक गुलाबे कलर की बिल्डिंग है।

ये चित्र एक जगह का है जिसमें सेंटिंग का काम चल रहा है।

पीछे की ओर पेड़ है आसपास पेड़ है पूरा सफेद रंग से पुता हुआ है।

सामने एक घड़ी लगी हुई है।

एक कार नीचे खड़ी है एक कार ऊपर है दोनों व्यक्ति ने नीले रंग का ड्रेस पेहना है।